घर को टीना से बनाया गया है।

जिसके पास बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक घर है।

भी पार्किंग किया हुआ है।

शक्ल भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में बरंदा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक दुकान है।

लाइट भी जला हुआ है।

चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं।

पीछे में रस्ता दिख रहा है।

मुझे एक पार्क दिखाई दे रही है।

बहुत सारे मनुष्य भी दिख रहा है।

पौधे भी दिख रहा है।

लड़की के हाथ में फोन है।

हर तरफ पेड़ पौधे ही दिख रहा है।